'' और मॅम जो कत्थे और सफ़ेद रंग की पाइप लगी हुई है ऐ जो रॉड लगी हुई हे ऐ नीले रंग की रौड लगी हुुई है और पाइप खड़ी हुई हैं सा --''

दो गेट लगे हुए है जो कत्थई रंग के सफेद नीले आसमानी सामने सड़क पर पेड-़ पौधे हरे पत्तियां है दीवाल खड़ी हुई है जो कत्थ--

-- प्लेटे रखी गई है कांचे लगाए गए हैं और ऊपर से सेट पर दीवार सफ़ेद है और गुब्बारे सफ़ेद हैं और काले रंग के गुब्बारे को पंखे लगे हुए है जो काले रंग की है जो बंद भी है।

एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जो नीले और सफेद है सफेद नीला आसमान है ऊपर से तार गया हुआ है जो काले रंग की तार है ।

पलटी रखे गए है बगल मे दो गाड़ी खड़ी हुई है जो सफेद रंग की गाड़ी या पीछे के साइड पे पेड़ पौधे हरी पत्तीया लाइटे लगाई गई है सफेद नीला आसमान--

काफी बड़ी बिल्डिंग है कांच लगाई गई है नीली रंग--

काफी बड़ा हाल है दौड़ने वाली मशीन रखी हुई है एक लेके जिम करने वाली मशीन है एक बड़ा सा मशीन है।

काफी बड़े हाल है सफेद दिवाले है लाइटे लगी हुई है डंबल्स रखे गए है काफी बड़े-बड़े डंबल्स हैं जो बीस किलो के सौ किलो के--